और माझा है और पास में एक टॉफिस है।

और छत पर काफी सारे शॉप मे लाइटें लगी हुई हैं।

एक सोफा है और राइट साइड एक वॉच है।

यह एक अ कम और हॉल है जिसमें काफी सारे पार्ट्स पड़े हुए--